पार्क दिख रहा है जिसमें काफी सारे झूले दिख रहे हैं इसमें से एक स्लाईड है जिसमें से एक बच्चा झूल रहा है।

ये कैमरे की फ्लैश जल रही है। सामने की ओर काफी सारी बॉटल दिख रहीं हैं आदमी का सर दिख रहा है जिसकी उम्म- में क्लिप लगी हुई है।

एक एक्सिस बैंक का ए_टी_एम है जिसके सामने काफी सारी गाड़ियां खड़ी है दो--

एक ऑटो स्टैन्ड दिख रहा है जिसमें एक आदमी है जो टेबल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है काफी पीछे में टेंट जैसा लगा हुआ है जिसमें लाइटिंग लगी है पीछे एक टेबल रखा है।

चिल्ड्रन बुक्स की एक दुकान दिख रही है जिसमें सामने की और काफी सारे चीजें लटकी हुई हैं एक--